और इन सड़क किनारे कुछ लोग अपने रेवड़ी का ठेला लगाए हुऐ हैं।

यह फोटो एक बैंक की है जो नारंगी कलर की दीवार दिखाई दे रही है इस बैंक के --

यह फोटो इ रिक्शा की है जिस पे लोग बैठकर आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं।

और अपने ऊपर एक तिरपाल रुमाल फैलाये हुए है नाव को एक आदमी चप्पू से चला रहा है।

और दो व्यक्ति काम करते हुए दिखाई दे रहे है। इस बोट के बगल से एक छोटी सी नाव जा रही हैं।

यह फोटो एक नदी की है। जहाँ ढेर सारी नाये बंद है और ये नदी के किनारे से बांधी गयी हैं।

ये इस फ़ोटो में एक बोहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है | जो --